पीछे बहुत सारे हैंगर है हैंगर के ऊपर कुछ शर्ट टंगे हुए हैं।

यहां कुछ नीचे मैट बिछाया हुआ है।

बगल में एक अगरबत्ती रखा हुआ है।

अंदर में कुछ रस्सियां है जो पीले रंग के हैं।

यहां पे एक नदी का दृश्य है नदी के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

यहां नीचे में धूप की रोशनी आ रही है।

यहां एक बुजुर्ग आदमी है पीछे में दो महिला हैं।

कुछ ड्राम है रखे हुए हैं धूप की रोशनी आ रही है।

पहाड़ के चट्टान बहुत सारे हैं चट्टान के अंदर एक गुफा है गुफा के अंदर एक आदमी खड़ा है।

यहां एक ठेला है ठेला के बगल में एक साइकिल लगा हुआ है।

यहां एक व्यक्ति पीछे बैग पहना हुआ है।

इस दृश्य में दुकान है दुकान के अंदर कुछ रैक है।

यहां बहोत सारे लाइट लगे हुए हैं एक लाइट जल रहा है।

ऊपर में एक स्विच बोर्ड है जिसके अंदर तार लगा हुआ है जो काले रंग का है।

ऊपर में कुछ पाइप है जो काले रंग के हैं मोटे मोटे हैं।

एक खिड़की है जिसके बाहर में कुछ पेड़ के पत्तियां दिख रही है।

ऊपर में दीवार का कलर व्हाइट किया हुआ है और बीच में ऑरेंज और नीचे नीला रंग का।

फसल के बगल में कुछ नीचे डंटिया हैं जो ब्राउन रंग के हैं और कुछ हरे रंग के डंटियाँ हैं।

इस दृश्य में एक जिम है जिम के अंदर बहुत सारे यंत्र लगे हुए हैं।

यहा पे एक पोस्टर है जिस पे एक आदमी का चित्र बना हुआ है।

एक व्यक्ति है जिसके हाथ में कड़ा है और धागा है।

यहां पे दो शटर है जो बंद है और दो शटर खुला हुआ है।